यहां पर यह कल का फ़ोटो लगा है | इन्होंने कंपनी बनवाई है और यह कंपनी अभी नई - नई बन रही है | यहां पर लोग काम करके पैसे कमाते हैं।

यहाँ पे रोड भी बना हुआ है। यहाँ कितने सारे आदमी खड़े हुए हैं और ये आदमी झाड़ू लगा रहा है। यहाँ देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है और ऑटो भी खड़े हैं।

ये अंकल एक का फोटो खींच रहे है। यहाँ पे ए.सी. भी लगी हुई है और एक टेबल पे मोबाईल रखा हुआ है।

यहाँ पे देखिये पंखा भी लगा हुआ है और पेंसिल वगैरा भी मिलती हैं।

अगर रजिस्ट्री होती है फिर उनको बजाज फाइनेंस वगैरा पे गाड़ी दी जाती है किस्तों वगैरा पे गाड़ी दी जाती है । कैश में दी जाती--

और वो देखिये उधर लड़की भी प्रोजेक्ट बना रही है।

ये कोई ये चीज़ की दुकान है। यहाँ पे सामान लेने के लिए आते हैं। यहाँ खाने का सामान वगैरा जींस वगैरा मिलती हैं।

यहां देखो कित्ती बड़ी दुकान है। यहाँ पर लोग सामान वगेरा खरीदने के लिए आते हैं।

यहाँ पे सोफा भी रखा हुआ है। यहाँ पे बैग भी रखा हुआ है। यहाँ पे किताबे भी रखी है और यहाँ दीवार का कलर भी बहुत अच्छा है पंखा भी लगा हुआ है।

के यहाँ पे पुलिसवाला भी खड़ा है और कुछ प कुछ प बस के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे बोर्ड वगगैरा भी लगा है।

ये और ये इतने सारे लोग देखे हैं। यहाँ पे आये हैं अपनी दुआ पूरी करने के लिए। यहाँ पे आदमी वगैरा भी हैं।

ये देखिये यहाँ पे ऑटो आया है। ये ऑटो सवारी लेके दूर-दूर तक का सफर करता है।